पे ए उनहत्तर एकावन है यह बस जो है शिवपुरी विधायक मुन्ना शुक्ला लालगंज का है इस बस के दाई तरफ एक टैम्पू हरा ग्रीन कलर का टैम्पू लगा हुआ है।

इस बिल्डिंग में एथी इस बैंक में मेरा भी खाता है इस बिल्डिंग में बहुत सारी सुचना पत्र लिखी हुई है।

फोटो लगी हुई है नीचे बेड पर एक बैग भी रहा हुआ है इब बेड के दाहिने साइड में इलेक्ट्रिक स्विच है ।

एक महिलाएं जो रेड कलर पेहने हुई हैं एक महिलाएं जो है ब्लू कलर पेहने हुई हैं ।